यहां पर सामने चार कंप्यूटर रखे नजर आ रहे हैं।

कंप्यूटर के सामने एक कुर्सी रखी नजर आ रहा है।

गनेश जी की परतिमा के नीचे एक छोटा सा मूर्ति का फोटो लगा हुआ नजर आ रहा है उस पर माला चढ़ाया गया है।

यहां पर एक लेडिस टीचर बच्चों को डांस सिखाती नजर आ रही है।

इसमें सभी लोग अपना फोटो देखकर डांस करने की कोशिश कर रहे हैं एक लड़का है जो सबको फोटो घिंच रहा है।

उसी के बगल में एक बुढ़ा व्यक्ति भी आता हुआ नजर आ रहा है यह बहुत ही अच्छी बात--

इसका मोबाइल नंबर है निन्यानवें चौंतीस सत्ताईस अठाईस--

यह कार देखने में काफी अच्छी लग रही है इस कार का कलर काला है यह देखने में कॉफी सुंदर भी लग रहा है।

यहां पर विभिन्न प्रकार के मछली बेचते हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पर केले भी बेचे जा रहे हैं यहां पर पपीते भी बेचे जा रहे हैं जोकि देखने में काफी अच्छे लग रहे यह बहुत ही अच्छी बात --